और वहाँ पर कुछ टायल्स भी लगी हुई दिखाई दे रही है खुर्शियां भी रखी हुई दिखाई दे रही है और कुछ प्लेट मे रसगुल्ले वैराग बर्फ़ी वैगरा रखे हुऐ दिखाई दे रहे है वो बल्ब की रोशनी भी चमकती हुई दिखाई दे रही है।

हमे यहाँ पर एक मकान बना हुआ दिखाई दे रहा है उसमे बड़े की दीवार बना हुआ है उसमे बहुत सारी फोटो लगी हुई दिखाई दे रही है जो की कुछ बच्चों की फोटो लगी हुई है।

वहाँ पर यहाँ पर कोई क्रिकेट खेलने वाला या कुछ और कुछ प्लेयर खेलने वाला मैदान डला हुआ है और कोई उसकी कुछ दुरी पर बहुत ज्यादा मकान बने हुए दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे भी बहुत ज्यादा--

कुछ बहुत ही सुंदर पौधे लगी हुई है और कुछ अशोक के पौधे लगे हुए है जिनकी पत्तियां टूटकर नीचे डली हुई दिखाई दे रही है।

यह मुखंड मे बहुत ही बड़ा लोहे का गेट लगा हुआ है उस पर सर्विस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है दीवार पर वहाँ पर कुछ व्यक्ति लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है कार भी रखी हुई है।